टेबल भी रखी दिखाई दे रही है टेबल काली कलर की दिखाई दे रही है जैसे रेड कलर की काली कलर की भी दिखाई दे रही है और व्हाइट कलर की भी दिखाई दे रही है चेयर भी दिखाई दे रही है जैसे की यहां पर कांच की कुछ दिखाई दे रही है यहां पे खिड़की भी दिखाई दे रही है मस्त कलर की टायल्स भी लगी हुई है बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने मे।

वहां अच्छी पहाड़ भी दिखाई दे है पानी भी दिखाई दे है तालाब भी दिखाई दे है नदी भी दिखाई दे रही है और पहाड भी दिखाई दे--

ये यहां पर अच्छी अच्छी है यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे है बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर काले कलर की कांच भी लगी है सफेद कलर की कांच भी लगी हुई है ।

माल खेड़ा भी लिखा हुआ है मैं यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है सही का अम्म चिन्ह भी लगा हुआ है यहाँ पर बहोत सारी चीज़ भी दिखाई जैसे यहाँ पे पोस्टर बहोत सारे लगे हुए है यहाँ पर गाड़ी के शीशे का छेना भी दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पम्प की नर्सिंग होम भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे पेट्रोल बहोत सारे पड़े पौधे भी दिखाई दे रहे है गमले भी छोटी छोटी सी दिखाई दे रहे है।